सफ़ेद रंग की चद्दर लाल रंग का कंबल लगा हुआ है और दीवाल पर बहुत ही सुंदर फोटो टंगी हुई है।

इस फोटो में एक प्लेट दिख रही है जिस पर चार लेग पीस रखे हुए हैं बीच में चटनी--

और उनके कंधे पर एक चद्दर लटकी हुई हे जिस पर सोने ओर पत्थर का काम किया हुआ है और भी उनके म्म बाकी जगहों पर भी सोने का कार्य किया हुआ है।

फोटो में आइडिया की ऑफिस दिख रही है जिसमें एक लड़का कंप्यूटर पे कुछ कार्य करते हुए नजर आ रहा है और अगल-बगल भी एक दो कंप्यूटर लगे हुए हैं।